बुक का बुक का दुकान है। ताज बुक स्टाल कोई केसेट्स-केसेट्स अभी मिल रहा है केसेट्स अभी मिल रहा है।

ऊपर से-ऊपर से-ऊपर से ब्लेजर टाइप का कोट लगाए हुए है लगाए हुए हैं उसके बगल मे एक छोटा सा पत्थर है पहाड़ हरीयर गाछी उच्छी छोटा_छोटा--

जहाज जहाज नदी मेनदी में चल रहा है उसमें आदमी सब बैठे हुए है।

सूरज उग रहा है जो एक बहुत सा अच्छा-अच्छा नजारा दिख रहा हैं उस पे घर बन जहाज पे घर बने हुए हैं बने हुए हैं एक आदमी उसको चला चला रहे हैं तीन-चार आदमी बैठे हुए हैं।

वो आगे गार्द बेठे हुए है जो हाथ में बन्दुक अ उ पहने रखे है| कुर्सी पे बेठे इधर से आदमी जा रहे है| अलग हरीयर अ अथि अ हरीयर कलर का पट्टी बिछा हुआ है।

बल्ब है पोस्टर पोस्टर भी लगा लगा हुआ लगा हुआ है जो कि लाल कलर की चूड़ियां पहनी हुई है दोनों दोनों हाथ ऊपर की की हुए--

इस पहाड़ के पहाड़ के बीच मे एक लड़का और एक लड़की एक लड़की है लड़की बैठी हुई है लड़का खड़ा है जो बैग टांग --

इस वीडियो में कोई चीज़ किस चीज़ कोई चीज़ का भाषण भाषण हो रहा है| ऊपर से अ लरी जैसा सजाए हुए सजाया हुए हैं| खिड़की सब में हरियर कपड़ा कपड़ा से लगा हुआ है।

एक गिलास में पानी पी रहे हैं एक मा मार्क्स लगाकर बैठे-बैठे हुए हैं बेंच पे।